मेरे प्यारे देशवासियो
ये मेरा सौभाग्य है कि मन की बात के माध्यम से मुझे कच्छ से लेकर कोहिमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभर के सभी नागरिकों को फिर एक बार नमस्कार करने का मौका मिला है
आप सबको नमस्कार
हमारे देश की विशालता और विविधता इसको याद करना इसको नमन करना हर भारतीय को गर्व से भर देता है
और इस विविधता के अनुभव का अवसर तो हमेशा ही अभीभूत कर देने वाला आनंद से भर देने वाला एक प्रकार से प्रेरणा का पुष्प होता है
कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता संस्कृति परम्पराओं खानपान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किये
पारंपरिक वस्त्र हस्तशिल्प कालीन बर्तन बांस और पीतल के उत्पाद पंजाब की फुलकारी आंध्र प्रदेश का शानदार लीथर का काम तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद भदोही भदोही की कालीन कच्छ के कॉपर के उत्पाद अनेक संगीत वादय यंत्र अनगिनत बातें समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियाँ भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं
हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ
उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी
लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया
आज वो ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है
हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला
मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में पचास प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं
और पिछले तीन वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख कारीगरों शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं
हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही साथहीसाथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है
एक जगह है जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है
शिल्पकला तो है ही है साथसाथ हमारे खानपान की विविधता भी है
वहां एक ही लाइन में इडलीडोसा छोलेभटूरे दालबाटी खमनखांडवी ना जाने क्याक्या था
मैंने खुद भी वहां बिहार के स्वादिष्ट लिट्टीचोखे का आनन्द लिया भरपूर आनंद लिया
भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले प्रदर्शिनियों का आयोजन होता रहता है
भारत को जानने के लिए भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले जरुर जाना चाहिए
एक भारतश्रेष्ठ भारत को जीभर जीने का ये अवसर बन जाता है
आप ना सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे बल्कि आप देश के मेहनती कारीगरों की विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे जरुर जाइये
मेरे प्यारे देशवासियो
हमारे देश की महान परम्परायें हैं
हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है जिसमें जीवमात्र के प्रति दया का भाव प्रकृति के प्रति अपार प्रेम ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलगअलग प्रजातियों के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं
भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पेसीज का भी आशियाना बना रहता है
और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं पांचसौ से भी ज्यादा अलगअलग प्रकार के और अलगअलग इलाके से आते हैं
पिछले दिनों गाँधी नगर में कॉप 13 कन्वेंशन जिसमें इस विषय पर काफी चिंतन हुआ मनन हुआ मन्थन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफी सराहना भी हुई
साथियो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले तीन वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पेसीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा
इस अवसर को कैसे उपयोगी बनायें इसके लिये आप अपने सुझाव जरुर भेजें
कॉप कन्वेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेघालय से जुडी एक अहम् जानकारी पर भी गया
हाल ही में बायोलॉजिस्ट्स ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अन्दर पाई जाती है
माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अन्दर रहने वाले जलजीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है
यह मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड केव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुँच पाती है
वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है
यह भारत की जैवविविधता को एक नया आयाम देने वाला है
हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड हैं
इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरुरी होता है
महान तमिल कवियत्री अव्वैयार अव्वैयार ने लिखा है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
इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महज़ मुट्ठीभर एक रेत है लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वो अपने आप में पूरे ब्रह्माण्ड के समान है
इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है जितना जाने उतना कम है
हमारी बायोडायवर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है संरक्षित रखना है और एक्सप्लोर भी करना है
मेरे प्यारे युवा साथियो
इन दिनों हमारे देश के बच्चों में युवाओं में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रूचि लगातार बढ़ रही है
अंतरिक्ष में रेकॉर्ड सैटेलाइट का प्रक्षेपण नएनए रेकॉर्ड नएनए मिशन हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं
जब मैं चंद्रयान2 के समय बेंगलुरु में था तो मैंने देखा था कि वहाँ उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था
नींद का नामओनिशान नहीं था
एक प्रकार से पूरी रात वो जागते रहे
उनमें साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर जो उत्सुकता थी वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं
बच्चों के युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए उनमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए एक और व्यवस्था शुरू हुई है
अब आप श्रीहरिकोटा से होने वाले रॉकेट लॉन्चिंग को सामने बैठकर देख सकते हैं
हाल ही में इसे सबके लिए खोल दिया गया है
विजिटर गैलरी बनाई गई है जिसमें 10 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है
इसरो की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के ज़रिये ओनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं
मुझे बताया गया है कि कई स्कूल अपने विद्यार्थियों को रॉकेट लॉन्चिंग दिखाने और उन्हें मोटीवेट करने के लिए टूर पर भी ले जा रहे हैं
मैं सभी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से आग्रह करूँगा कि आने वाले समय में वे इसका लाभ जरुर उठायें
मैं आपको एक और रोमांचक जानकारी देना चाहता हूँ
मैंने नामो App पर झारखण्ड के धनबाद के रहने वाले पारस का कमेंट पढ़ा
पारस चाहते हैं कि मैं इसरो के युविका प्रोग्राम के बारे में युवासाथियों को बताऊँ
युवाओं को साइंस से जोड़ने के लिए युविका इसरो का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है
2019 में यह कार्यक्रम स्कूली स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था
युविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम युवा विज्ञानी Karyakram
यह कार्यक्रम हमारे विजन जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के अनुरूप है
इस प्रोग्राम में अपने एक्साम के बाद छुट्टियों में स्टूडेंट्स इसरो के अलगअलग सेंटर्स में जाकर स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस और स्पेस एप्लिकेशंस के बारे में सीखते हैं
आपको यदि यह जानना है ट्रेनिंग कैसी है किस प्रकार की है कितनी रोमांचक है पिछली बार जिन्होंने इसको अटेंड किया है उनके एक्सपीरियंस अवश्य पढ़ें
आपको खुद अटेंड करना हैं तो इसरो से जुड़ी युविका की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं
मेरे युवा साथियों मैं आपके लिए बताता हूँ वेबसाइट का नाम लिख लीजिये और जरुर आज ही विसित कीजिये wwwyuvikaइसरोgovइन
लिख लिया ना
मेरे प्यारे देशवासियों
31 जनवरी 2020 को लद्दाख़ की खूबसूरत वादियाँ एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी
लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के AN32 विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया
इस उड़ान में 10 इंडियन बायोजेट फ्यूएल का मिश्रण किया गया था आई ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनो में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया
यही नहीं लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊँचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है
ख़ास बात ये है कि बायोजेट फ्यूएल को नॉनेडिबल ट्री बोरने ओइल से तैयार किया गया है
इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है
इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी बल्कि कच्चेतेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है
मैं इस बड़े कार्य में जुड़े सभी लोगो को बधाई देता हूँ
विशेष रूप से सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ओएफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को जिन्होनें बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया
उनका ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है आई
मेरे प्यारे देशवासियो
हमारा नया भारत अब पुराने अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है
खासतौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएँ तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है
बिहार के पूर्णिया की कहानी देशभर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है
ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है
ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है
मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना आई साथियो पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून कोकून तैयार करती थीं जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था
जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बना कर मोटा मुनाफा कमाते थे
लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल कर के रख दी आई इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरीउत्पादन समूह बनाए
इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किये और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियाँ बनवाना भी शुरू कर दिया आई आपको जान करके हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी वहीँ अब उससे बनी साड़ियाँ हजारो रुपयों में बिक रही हैं आई आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदीयों ने जो कमाल किये हैं उसका असर अब कई गावों में देखने को मिल रहा है
पूर्णिया के कई गावोँ के किसान दीदीयाँ अब न केवल साड़ियाँ तैयार करवा रही हैं बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टाल लगा कर बेच भी रही हैं आई एक उदाहरण कि आज की महिला नई शक्ति नई सोच के साथ किस तरह नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैं आई
मेरे प्यारे देशवासियो
हमारे देश की महिलाओं हमारी बेटियों की उद्यमशीलता उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है
अपने आस पास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जिनसे पता चलता है कि बेटियाँ किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं नई ऊँचाई प्राप्त कर रही हैं
मैं आपके साथ बारह साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरुर करना चाहूँगा
काम्या ने सिर्फ बारह साल की उम्र में ही माउंट एकोनकागुआ उसको फ़तेह करने का कारनामा कर दिखाया है
ये दक्षिण अमेरिका में एंडेस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है जो लगभग 7000 मीटर ऊँची है
हर भारतीय को ये बात छू जायेगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फ़तेह किया और सबसे पहले वहाँ हमारा तिरंगा फहराया
मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नये मिशन पर है जिसका नाम है मिशन साहस
इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊँची चोटियों को फ़तेह करने में जुटी है
इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है
मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ
वैसे काम्या की उपलब्धि सभी को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करती है
इतनी कम उम्र में काम्या जिस ऊँचाई पर पहुंची है उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है
आ नेशन थाट इस फिट विल बीई आ नेशन थाट इस हित
यानी जो देश फिट है वो हमेशा हित भी रहेगा
वैसे आने वाले महीने तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त हैं
भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ढेरों अवसर प्रदान करती है
एक तरफ जहाँ ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं तो वहीँ दूसरी तरफ दूरदूर तक फैला रेगिस्तान है
एक ओर जहाँ घने जंगलों का बसेरा है तो वहीँ दूसरी ओर समुद्र का असीम विस्तार है
इसलिए मेरा आप सब से विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह अपनी रूचि की एक्टिविटी चुनें और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़ें
ज़िन्दगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना वैसे साथियो बारह साल की बेटी काम्या की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे
साथियो अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं विकास करना चाहते हैं कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए
हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है
अब आप सोच रहे होंगे कि भागीरथी अम्मा कौन है भागीरथी अम्मा केराला के कोल्लम में रहती है
बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया
छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया
लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया अपना ज़ज्बा नहीं खोया
दस साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था
105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया
पढाई शुरू की
इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने level4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी
उन्होंने परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए
इतना ही नहीं गणित में तो शतप्रतिशत अंक हासिल किए
अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती हैं
आगे की परीक्षाएं देना चाहती हैं
ज़ाहिर है भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं
प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत हैं
मैं आज विशेषरूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूँ
जीवन के विपरीत समय में हमारा हौसला हमारी इच्छाशक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल देती है
अभी हाल ही में मैंने मीडिया में एक ऐसी स्टोरी पढ़ी जिसे मैं आपसे जरुर शेयर करना चाहता हूँ
ये कहानी है मुरादाबाद के हमीरपुर गाँव में रहने वाले सलमान की
सलमान जन्म से ही दिव्यांग हैं
उनके पैर उन्हें साथ नहीं देते हैं
इस कठिनाई के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद ही अपना काम शुरू करने का फैसला किया
साथ ही ये भी निश्चय किया कि अब वो अपने जैसे दिव्यांग साथियों की मदद भी करेंगे
फिर क्या था सलमान ने अपने ही गाँव में चप्पल और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू कर दिया
देखतेहीदेखते उनके साथ 30 दिव्यांग साथी जुड़ गए
आप ये भी गौर करिए कि सलमान को खुद चलने में दिक्कत थी लेकिन उन्होंने दूसरों का चलना आसान करने वाली चप्पल बनाने का फैसला किया
खास बात ये है कि सलमान ने साथी दिव्यांगजनों को खुद ही ट्रेनिंग दी
अब ये सब मिलकर मैन्यूफैक्चरिंग भी करते हैं और मार्केटिंग भी
अपनी मेहनत से इन लोगों ने ना केवल अपने लिए रोजगार सुनिश्चित किया बल्कि अपनी कंपनी को भी प्रॉफिट में पहुंचा दिया
अब ये लोग मिलकर दिनभर में डेढ़सौ 150 जोड़ी चप्पलें तैयार कर लेते हैं
इतना ही नहीं सलमान ने इस साल 100 और दिव्यांगो को रोजगार देने का संकल्प भी लिया है
मैं इन सबके हौंसले उनकी उद्यमशीलता को सैल्यूट करता हूँ
ऐसी ही संकल्प शक्ति गुजरात के कच्छ इलाके में अजरक गाँव के लोगों ने भी दिखाई है
साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद सभी लोग गाँव छोड़ रहे थे तभी इस्माइल खत्री नाम के शख्स ने गाँव में ही रहकर अजरक प्रिंट की अपनी पारंपरिक कला को सहेजने का फैसला लिया
फिर क्या था देखतेहीदेखते प्रकृति के रंगों से बनी अजरक कला हर किसी को लुभाने लगी और ये पूरा गाँव हस्तशिल्प की अपनी पारंपरिक विधा से जुड़ गया
गाँव वालों ने ना केवल सैकड़ों वर्ष पुरानी अपनी इस कला को सहेजा बल्कि उसे आधुनिक फैशन के साथ भी जोड़ दिया
अब बड़ेबड़े डिजाइनर बड़ेबड़े डिजाइन संस्थान अजरक प्रिंट का इस्तेमाल करने लगे हैं
गाँव के परिश्रमी लोगों की वजह से आज अजरक प्रिंट एक बड़ा ब्रांड बन रहा है
दुनिया के बड़े खरीदार इस प्रिंट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो
हाल ही में देशभर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है
भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद देश की चेतना को जागृत किये हुए हैं
महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के आशीर्वाद आप पर बना रहे आपकी हर मनोकामना शिवजी पूरी करें आप ऊर्जावान रहें स्वस्थ रहें सुखी रहें और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें
महाशिवरात्रि के साथ ही वसंत ऋतु की आभा भी दिनोदिन अब और बढ़ती जायेगी
आने वाले दिनों में होली का भी त्योहार है इसके तुरंत बाद गुड़ीपड़वा भी आने वाला है
नवरात्रि का पर्व भी इसके साथ जुड़ा होता है
रामनवमीं का पर्व भी आएगा
पर्व और त्योहार हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं
हर त्योहार के पीछे कोईनकोई ऐसा सामाजिक संदेश छुपा होता है जो समाज को ही नहीं पूरे देश को एकता में बाँधकर रखता है
होली के बाद चैत्र शुक्लप्रतिपदा से भारतीय विक्रमी नववर्ष की शुरुआत भी होती है
उसके लिए भी भारतीय नववर्ष की भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनायें देता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो
अगली मन की बात तक तो मुझे लगता है शायद विद्यार्थी परीक्षा में व्यस्त होंगें
जिनकी परीक्षा पूरी हो गई होगी वो मस्त होंगें
जो व्यस्त हैं जो मस्त हैं उनको भी अनेकअनेक शुभकामनाएँ देते हुए आइये अगली मन की बात के लिए अनेकअनेक बातों को लेकर के फिर से मिलेंगे
बहुतबहुत धन्यवाद